इहा दे मोला एगो मंदिर नियन तो देखत हे एहे में आदमी मन पूजा करे आथे आउ आई जाथे पेड़ उगावे में आदमी मन पूजा करे चले जाथे भगवान का --